पत्थल से बनी हुई बड़ी सी सीढ़ी है।

एक दो पेड़ जो सुखे हुए पड़े हुए हैं।

यह एक हॉल टाइप का है उसमें बहोत सारे दरवाजे है।

आसपास बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

लंबे लंबे बिजली के वायर भी जा रहे हैं।

नीचे में भगवान जी की बहुत सारी फोटो है जिस पर माला लगी हुई है एक लोटनी है।

इस पे हीरो लिखा हुआ है आसपास छोटे छोटे कुछ घर हैं इसकी छत टीने की है आसपास कुछ ईटे भी फेंकी गई हैं।

यहां कुछ कुछ छोटे छोटे घर देख रहे हैं जिसकी छत टिने की है।

यह एक दुकान का फोटो है।

जो तीन मंजिल का है उसमें बहुत सारी खिड़कियां है।

यह एक दुकान का फोटो है उसके काउंटर पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

पेन रखा हुआ है पेंसिल रखा हुआ है और भी बहोत सा समान है।

नीचे घासें दिख रही है बहुत सारी मिट्टीयाँ दिख रही है।

यहां बहोत सारे घर दिख रहे हैं जो की लकड़ी के हैं।

बहोत सारा बल्ब दिख रहे हैं पंखे लगे हुए हैं।

यहां पे एक दुकान है जिसके ऊपर बैनर लगा हुआ है सिटी सेंटर सैलून का जो कि गोपालगंज का है।

इसकी छत टिने से बना हुआ है।

यहां पे बहुत सारे छोटे छोटे घर दिख रहे है।

काले कर का है उसपे एक बैग रखा हुआ है वो भी काले कलर का है।

उपर छत पर बहोत सारी लाइटें लगी हुई है।

और बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं छोटे छोटे घास दिख रही है छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं।

एक पीछे में पेंटिंग बना हुआ है जिसमें एल_सी_सी लिखा हुआ है बहोत सारी लाइट लगी हुई है ए_सी भी लगा हुआ है।

छोटे हैं जो पौधे दिख रहे हैं मिट्टियां दिख रही है घास दिख रही है।

यहां पे कुछ कुर्सियां दिख रही हैं।

जोकि काले कलर की है बैठने के लिए सोफा है जोकि काले कलर का है।

बहोत सारे लाइटे लगी हुई है।

घर में बहोत सारे शीशे लगे हुए हैं।

सीढ़ी भी बनी हुई है घर हल्का पीला कलर का है।

छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं मिट्टियां दिख रही है घास दिख रहा है बिजली वाले तारें दिख रही हैं।